बोतल रखी हुई हैं टेबल पर बुक्स रखी हुई हैं।

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक बड़ी सी हवेली बनी हुई है जो पुरानी है लगती है और एक व्यक्ति जा रहा है अंदर के लिए----

और बहुत सारी लगी है मेडिसिन दवाईयों का बोर्ड ----

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह एक पार्क है।

यहाँ हम देख पा रहे हैं यह एक ढाबा है जहाँ पर लिखा है पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा ----

बहुत सारे उससे छोटे और भी उससे छोटे गोल-गोल डिजाइन में बने हुए हैं ।

यहाँ एक पार्क है और बिल्डिंग बनी हुई है एक पेड़-----

और एक बाइक खड़ी हुई है एक हेलमेट रखा हुआ है।

और बगल में एटीएल फोर जी लिखा हुआ है।

यहाँ पर मछलियां कटी हुई पड़ी हैं कुछ समूच ऐसे ही पड़ी हैं।

और पत्थर के कुछ रखे हुए हैं एक टेंपो जा रहा है उस साइड में----

तीन व्ययक्ति खड़े हुए है बाहर कुछ लोग अंदर बैठे है।

और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यह एक बारबर की दुकान है।

एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है एक व्यक्ति बाहर खड़ा---

रोड जिसके बगल में एक पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा -----

योगा कर रहे हैं एक मकान बना हुआ है।